अभी बहुत ही अच्छा सा डिजाइनिंग किया गया है।

जोकि ठंडीख में धान का ढेर है।

मुझे बहुत ही अच्छी कॉफ़ी दिखाई दे रही है।